एक व्यक्ति खड़ा हुआ है | जिसमें यह गाड़ी खड़ी हुई है और वाईट कलर कि गाड़ी है उसी में पूरा सामान बन रहा है गा और वायर दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर कि दिखाई दे रही है येल्लो कलर कि दिखाई दे रहा है।

लगी हुई है गाड़ी जिसमे ट्रक सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक टू व्हीलर खड़ी हुई है जिसमें वाईट कलर और काले कलर की कवर शीट लगी हुई है।